लोग इन टेबलें बहोत सारी चेयर है इन टेबलों का कलर सफेद है स्पून का ऊपर प्लेट है चम्मच है स्टूले बहोत --

एक बिल्डिंग है बिल्डिंग का कलर येलो है हरा कलर का बोर्ड है बहोत सारे पेड़ पोधै लगे हैं रेलिंग का गेट है गेटो का कलर --

नीले प्लेट है कप है ग्लास है बहुत सारी चीजे है ए_सी है लाइट है पंखा है लाइट है बहुत सारी चीजे हैं बोर्ड है बोर्ड का कलर सफेद येलो --

पूल दिखाई स्विमिंग पूल दिखाई दे स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है स्विमिंग पूल दिखा --

बहोत सारे पंखे हैं बहोत सारे पंखे--

सारे लोग दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे बिल्डिंग दिखाई --

स्काई भी नीला और रेड है बहोत सारे लोग हैं बाहर पीछे बहोत बडा मिरर लगाव --

इस फोटो मे मुझे चेयर दिखाई दे रही है इस फोटो मे मुझे चेयर दिखाई दे रही है इस फोटो मे मुझे चेयर दिखाई दे रही है इस फोटो मे मुझे चेयर --

फोटो में एक चेयर दिखाई दे रही है इस फोटो में एक चेयर दिखाई दे रही है इस फोटो में एक चेयर दिखाई दे रही है इस फोटो में एक चेयर दिखाई दे --

जो की ब्लैक कलर के हैं जिनका कलर काला है नीला--

पीला है काला है सफेद है पिंक है बहोत सारी चेयर रखी हुई है बहोत सारी चीजे रखी हुई है बहोत सारे सामान रखें --

इस फोटो में दो दूल्हा दुल्हन दिखाई दे रहे हैं दुल्हन ने लाल कलर का ले--